और स्काई कलर भी है येलो भी है पि अ ब्लैक भी है सभी तरह का यहाँ पर फूल लगा हुआ है |

और नीचे सभी प्रकार के बुक मिल रहा है यहाँ पर बच्चे लोग बुक की खरीदारी करने जाते हैं रंग-बिरंग के बुक खरीदते हैं यहाँ पे सब बच्चा सब।

यह रेलवे स्टेशन है | यहाँ पर टिकट कट कटवा रहा है लोग |

यह एक मोबाइल का दुकान है इसमें रंग-बिरंग के भीवो मोबाइल मिल रहा है लोग अपना खरीद भीवो मोबाइल का खरीदारी कर रहे हैं।

घर बना हुआ है इसमें गाड़ी लगी हुई बस भी लगी हुई सब कोई यहाँ पर तेल ले रहे हैं | गाड़ी भी मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।

ये देखने में तो बहुत सुंदर लगा रहा है लेकिन बहुत सुंदर भी है यहाँ पर बच्चे लोग आपना जन्मदिन मनाने आते हैं।

इसमें लेबर लोग काम कर रहे हैं | यहाँ पर बगल में पेड़-पौधा भी है | बगल में एक और मकान है और फील्ड में एक --